सामने फूलों की दुकान दिख रही है।

सामने में एक डांसर दिखाई दे रहा है।

ये एक ऑफिस के बाहर की तस्वीर है।

यहां पर बहोत सारे गमले दिखाई दे रहे हैं।

एक त्रपाल है जिसके ऊपर नीले रंग का कपड़ा लगा हुआ हैं।

बाई ओर एक झोपड़ी बनी है।

पीछे पेड़ लगा हुवा हैं पेड़ पर हरे रंग के पत्ते हैं।

जिसके बाहर मेला लगा हुआ है।

पीछे सफेद रंग के परदे हैं।

इसमें बहोत सारे छोटे छोटे पौधे भी हैं।

जिसमें एक पंख लगा हुआ है उसके ऊपर लकड़ी का डब्बा बना हुआ है।

पीछे बड़े बड़े केले के पौधे लगे हैं।

ये एक चर्च की तस्वीर है जिसका रंग सफेद है।

जिसके अंदर दो सो ए_सी लगे हुए हैं।

शीशे के ऊपर लिखा है यहां पासबुक प्रिंट किया--

ऊपर रंग बिरंगी लोगों की तस्वीरे बनी हुई है।

ये एक मारुती सुजुजी का शोरूम हैं।

उसने कटी फटी जींस पहनी हुई है।

तीन चार कुर्सियां इकट्ठी है एक झूलने वाली कुर्सी है।

जिस पर दो कुत्ते के बेड रखें हुए हैं।

साइड में कुत्ते का खाना रखा हुआ है।

यहां पर व्यायाम शाला लिखा हुआ है।

एक मंदिर दिखाई दे रहा है।